ये हमें एक चर्च का सिम्बल दिख रहा है वहाँ चर्च बहुत बड़ा है तथा वो पीले रंग से रंगा गया है उसके आस पास बहुत सी झाडियं है।

ये इमेज हमे एक बड़ी सी बिल्डिंग की दिखाई जा रही है जिसके ऊपर हमे लाल कलर की बैनर मे हमे सफेद कलर के शब्दों मे --

यह इमेज में हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है जिसके ऊपर बहोत सी लाइटें लगाई गई है वहाँ लाइटों का कलर पिंक और ऑरेंज और येलो दिख रहा है वहाँ पे हमें बहोत से लोगन दिखाई दे रहे --

यह इमेज में हमें एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही है।

उसके बीच में प्रवेश द्वार है तथा उसके नीचे उसके एक बड़ी-सी नदी बनी हुई है ओ नदी में उसके साफ-साफ परछाई बनी हुई है जैसा की वो और नीचे भी बना हुआ दिख रहा है वहाँ पे बहोत से पेड़ भी लगे हुए हैं और झाड़ियाँ भी लगी --

ये इमेज में हमें एक बुल्डोजर दिखाई दे रहा है जो की पेड़ो को हटाते हुए दिख रहा है और पेड़ो--